मशीन के अंदर और मशीन के ऊपर बैठ के उसने ऑरेंज ऑरेंज कलर ब्लैक ब्लैक कलर की टी-शर्ट पहनी हुई है और एक वो उधर दूसरी एक्सर्साइज़ कर रहा हैं एण्ड विंडों बनी हुई हैं लाइटे लगी हुई हैं विंडों में पर्दे लगे हुए है जाली वाले।

पास में बड़े-बड़े पेड़ बने हुए है नारियल वाले पेड़ बने हुए है लाइट के तार दिख रहे है मकान बने हुए दिख रहे है टाइप बने हुए है ऑटो के आस-पास में खेत पूरे में घास वगैरा है बहुत ज्यादा--